एक टिश्यू पेपर भी है।

यहाँ पर कार है और यहाँ पर टायर खोला हुआ है। कार का टायर है और बहोत सारे कार रखे हुए हैं। सर्विस सेंटर यहाँ पर है। उपर ब्लू ब्लू कपड़े से ढका हुआ है। इसका इंजन पार्ट खुला हुआ है। दोतीन मोटरसाइकिल भी रखा हुआ हैं।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

यहाँ बहोत बड़ा बिलडिंग है। यहाँ पर मिस्तरी लोग कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं। एक यहाँ पे वाइट कलर का पेंट चढ़ा हुआ है। बिलडिंग है। का बिलडिंग है बन रहे हैं। वाइट है दो को आसमान भी नीला है बहोत बड़ा।

गार्डन टाइप का है। बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं। रोड है।

यहाँ पास लगा हुआ है यू.पी. का पैसहट फ डी जीरो से सात सो इक्कीस बस --